एक मशीन दिखाई दे रही है जिसमे और बाइक दिखा रही है और टू व्हीलर रखी हुई है। एक ऑटो दिखाई दे रही है और एक आदमी खड़ा हु --

है जिसमे एक ब्यूटीशियन एक ब्यूटी पार्लर जो है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। एक फ़ोटो दिखाई दे रही है।

घास लगी हुई है और कुछ घास छोटी छोटी कुछ बड़ी घास दिखाई दे रही हैं।

सामने एक कुछ सो का सामान लगा हुआ है। लाइटिंग दिखाई दे रही हे। रेड और ग्रीन लाईट भी दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाइ दे रहा है डामर की रोड बनी हुई है जो घर है वो तिन मंजिल का दिखाइ दे रहा है।

ऊपर एक टेरिस दिखाई दे रहा है। गेट का रंग काला और हरा दिखाई दे रहा है।

बाउंड्री है। बाउंड्री पत्थर की ही दिखाई दे रही है कुछ घास दिखाई दे रही है।

रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते में पानी दिखाई दे रहा है ऊपर पत्थरों की दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है।

मैदान दिखाई दे रहा है इसमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं सीमेंट का रोड है।

एक स्कुल एक रथ यात्रा है। यात्रा में काफी सारी माला लगी हुई हैं। एक एक छत है। जिसके ऊपर बाउंड्री दिखाई दे रही है।

एक रोड दिखाई दे रही है रोड गीली दिख एक नदी है जिसके अगल बगल पुल बना हो अब पुल सामने रोड दिखाई दे रही है।

पुल दिखायी दे रहा है पुल के ऊपर एक टिन सेट का घर बना हुआ है एक लोहे की जाली दिखायी दे रही है पीले पत्थर दिखायी --